इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि एक दुकान है जिस --

आसमान दिख रहा है और धूप की तेज रोशनी --

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि एक पुतला है।

इस तस्वीर यह दिखाई दे रहा है कि धूप की तेज रोशनी और यह एक विधुत जंक्शन है जिसके ऊपर अंग्रेजी मे कुछ लिखा हुआ और आस पास इमारतें नजर आ रही है।

इस तस्वीर मे ये नजर आ रहा है की एक ईमारत बनी हुई है।

तस्वीर में ये नजर आ रहा है कि एक मन्दिर नजर आ रहा है पेड़ पोधे नजर आ रहे हैं और बहोत सारी लाईटें जल रही हैं आसमान दिख रहा है।

पट्टी लगी हुई है और कुछ पेड़-पोधे लगे हुए हैं आसमान दिख रहा है और कुछ लोग बेठे हुए हैं।